ये दुकान की फोटो हैं जो कि अभी उम्म शॉप खुला हुआ है और उसके सामने बहुत सारे चेयर्स एंड टेबल्स रखे गए हैं बैठने के लिए। एंड यहां पे बहुत सारे साइन बोर्डस लगाए गए हैं।

ये एक स्कूल की फोटो है जिसका कलर है मैरून डार्क मैरून एंड वहाँ पे साइड में दो ब्लोक्स है बड़े-बड़े स्क्वायर करके एंड वहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधा लगाया गया है।

टॉयज शोप शोप का नाम है ऐंड यहां पे बहोत सारे कपडे टांग करके रखे गए है फॉर ध कस्टमर ।

ये एक दुकान की फोटो है जहाँ पे रेड कलर के साइन बोर्ड में भारतीय वस्त्रलाया करके लिखा गया है।

ये एक डीलर की फोटो है जहां पे बहोत सारी गाड़ियां पार्क करके रखी गई है।

रोड्स भी हैं इंस्ट्रक्शन के--